लाल रंग मे एक कुर्सी पड़ी है सामने एक आदमी खड़ा है जिसने व्हाइट कलर --

मुझे यहां पर सामने एक दो बाइक नजर आ रही है सामने एक ब्लैक कलर की बाइक है और सामने एक--

मुझे यहां पर सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के सामने कुछ खिड़की नजर आ रही है और उसके नीचे कुछ हाथी के --

दरगाह बनी हुई है सामने कुछ छोटे-छोटे पौधे नजर आ रहे हैं उसके पास--

यहा काऊच बना हुआ है यहा पर कुछ डेस्क पड़े हुए है जहा पर लोग बेठते है।

मुझे यहां पर एक इंडिया माउंटेनीरिंग फाउंडेशन आई_एम --

और ये नीचे एक येलो कलर का निशान लगी हुई हैऔर ये बहुत अच्छा खूबसूरत--

मुझे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है पहाड़ के ऊपर एक दरख्त लगा हुआ है उसके सामने बहुत ज्यादा पानी नजर आ रहा है।

मुझे यहां पर सामने एक कुछ बहुत ज्यादा लड़के नजर आ रहे हैं जिसके सामने कुछ डक्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर कुछ--

कुछ बढ़िया मछलियां है कुछ उस से छोटी मछलीयां है कु--

और सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंगें नजर आ रही है आसपास बहुत ज्यादा दरख्त है।

यहां पर मुझे एक मैरिज हाल नजर आ रहा है जिसको बहुत फूलों के साथ सजाया गया है सामने दो आधे--

यहां पर एक बार शॉप नजर आ रही है उसके सामने एक--

ब्लैक कलर की कुर्सी हैऔर यहां पर सामने एक शीशा का--

मुझे यहां पर बहुत ज्यादा बिल्डिंगें नजर आ रही है उसके अलावा बहुत ज्यादा दरख्त भी नजर आ रहे हैं और यहां पर बहुत--

कुछ बहुत बड़ी जो लाइटें होती हैं उसे वो भी लगी हुई है।